एवं एक दुकानदार एक लड़की को कुछ सामान दे रहा है।

एवं कुछ बच्चे पीछे खड़े हुए हैं एक सामने से सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी उस आदमी की तरफ़ जाता हुआ दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर मुझे एक बहुत ही सुन्दर नारंगी रंग का ब्रिज दिखाई दे रहा है जो पत्थर का बना हुआ है ऊपर लोहै से सजाया गया है।

एवं घोड़े के साथ एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एवं लोहे के बड़े-बड़े तार भी दिखाई दे रह हैं।

यहाँ पर मुझे शासकीय महा विद्यालय घर घोडा की एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे बाई_सी एलेट्रिक विकल का शोरूम दिखाई दे रहा है जहां पर एलेट्रिक ऑटो खड़े हुए है ।

यहाँ पर मुझे वन बिहार दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत से जानवर है और तीन-चार हाथी चलते हुए दिखाई दे रहे है।

एक लड़का खड़ा हुआ हाँथियो को देख रहा है आसपास हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है एवं सूखा डोज़ भी दिखाई दे रहा है

यहाँ पर मुझे एक बड़ी सी सफ़ेद कलर की खिड़कीदार बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिसमे बिजली के आसपास बिजली के तार लगे हुए दिखाई दे रहे है।

एवं कुछ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है पेड़ हरे-भरे एवं छायादार पेड़ लगे है।

यहाँ पर मुझे जिम दिखाई दे रहा है कुछ लड़के प्रैक्टिस करते हुए भी दिखाई दे रहे है एवं ट्रेनर लड़को को प्रैक्टिस करवा रहे है यहाँ पर मुझे बहुत सी मशीने भी रखी हुई दिखाई दे रही है ।

यहाँ पर मुझे एक मैदान में कुछ बच्चे खो-खो खेलते हुए दिखाई दे रहे है सभी बच्चो ने नीले कलर की ड्रेस पहनी हुई है कुछ बच्चे--